तक मै देख पा रहा हूँ यह रोड है रोड के बगल में बियोष हॉस्पिटल ।

और काफी सुंदर- सुंदर शीशा नजर आ रहे हैं और सीढ़ियां भी काफी अच्छी लग रही है लाइटनिंग भी काफी अच्छा लगाया हुआ है और नीचे का फ्लोरिंग भी काफी जबरद--

काफी बेहतरीन लग रहा है काफी अच्छे लाइटिंग की हुई है गुलाबी कलर की जो रोशनी आ रही है काफी।

जहां तक मैं देख पा रहा हूं यहां पर ढलैया किया गया है और ढलैया को सपोर्ट में रखने के लिए नीचे--

और देखिए वहां पर एक टावर भी है उस टावर पर चार बल्ब लगे हुए हैं बड़े-बड़े बल्ब जो जिसको हैलोजन बोलते हैं ।

तक मै देख पा रहा हूँ यहाँ पंडित जी है और उस पंडित जी को चार।

वहाँ पर काउंटर पे अ जो टेस्टी नमकीन करके है उसको सर्वे कर रही है लोगो में।

एक पेड़ लगाया हुआ है और उस पेड़ को ढकने के लिए या उसके सेफ्टी के लिए वहां पे नेट का जाली उसके ऊपर लगाया हुआ।

उसके बगल में एक डिब्बा नज़र आ रहा है जो कि ब्राउन कलर का है और एक भारत का मैप भी है।

ब्लैक टी शर्ट में और ऊपर में टोपी पहन कर उसपे हाथ रख के खड़ा है और ब्लैक --

इसमें से तेल नीचे टैंक में भरा जा रहा है।

तार बांधा हुआ है और उस तार के आगे छोटे छोटे बच्चे खेल रहे है।

अपने गर्दन में लपेटे हुए एक बच्ची को गोदी ले रहा है और उसके बगल में एक।